इस पिक्चर में हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें पंजाब एंड सिंध बैंक दिखाई दे रहा है।

और चेयर दिखाई दे रही है एक बाइक दिखाई दे रही है

पीछे हमे पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहे है।

ग्राउंड में मिट्टी दिखाई दे रही है।

घास घास दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर मे हमे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।